हेलो दोस्तों प्यारे दोस्तों पीछे एक हमको बिल्डिंग दिख रही है बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसके साथ आगे --

और एक मनुष्य कटिंग कर रहा है ऊपर की ओर ये पंखे भी है और दो कांच भी है और साइड में बहुत सारे सामान भी है।

एक बहुत बड़ी नाव तैर रही है समुंद्र की तरफ।

और इसके अंदर बहुत सारे मनुष्य भी बैठे हुए हैं और कॉफी पी रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है नो पार्किंग ।

सभी तगड़े तगड़े चल रहे हैं और पानी फेंग़ रहे हैं एक टेबल भी खड़ी है और दो तीन बाइक भी है।